यहाँ बहुत पंखे लाइट सब हैं और दरवाजा भी ब्राउन कलर का है यहाँ कोई अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा --

यहाँ पे ऐसे लग रहा है ये कोई फंक्शन चल रहा है किसी का और यहाँ पर फूड स्टाल्स भी दिख रहे हैं और साइड में पानी के कैन्स हैं और बड़े-बड़े बकेट्स भी हैं।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है जो कि दो माले का बिल्डिंग है और लोग इधर उधर खेल रहे हैं | बोहोत सी दुकाने सब्ज़ियाँ सब मिलती हैं और लोग यहां रहते भी हैं | यहाँ--

यहां एक घर है और घर हरा गुलाबी रंग का है और ऊपर बालकनी है और वहां पर गिल ग्रिल्स है और एक बहुत बड़ा टावर है और वो टावर में बहुत वायरिंग हैं।